यह एक बहुत बड़ी नहर है।

यहां पे एक पेड़ लगा हुआ है।

दो दुकान खुली हुई हैं और एक काउंटर रखा हुआ है।

और उनके दोनों हाथ उठे हुए हैं।

ये एक पार्क है जिसमें एक छज्जा सा बना हुआ है।

ये एक ऑफिस है जिसमें नीले कलर का काउंटर रखा है।

और कुछ टिचु टिशू पेपर है और एक बोर्ड भी लग रहा है।

इसके ऊपर कुछ लाइटे लगी हुई है।

ये बाहर कुछ कार खड़ी हैं और एक बाइक भी खड़ी हुई है।

और जुराबे भी टंग रहे हैं और पर्दे भी लगे हुए हैं।

प्लेट के अंदर छोले रखे हुए है।

एक कटोरे में रायता भी रखी हुई है।

और एक कुर्सी भी रखे हुए हैं।

और कुछ सरिया भी बिछा रखे हैं।

कुछ आदमी खड़े हैं और उसके आस पास कुछ हरे भरे पेड़ हैं।

और बहोत सारी दुकान है और कुछ आदमी भी खड़े है कुछ औरते भी हैं।

और कुछ हरे भरे पेड़ है।

यहां पे एक आदमी खड़ा है।

यहां एक बैंक है जिसमें एक बोर्ड लगा हुआ है।